पेड़ में पोस्टर लगाया हुआ है।

बहुत सारे हिरन दिखाई दे रहे हैं।

हाॅल का कलर है सफेद और काला है।

दीवार में पंखा लगाया हुआ है।

बहुत सारे पेड़ पौधा दिखाई दे रहे हैं।

और नीले रंग का बादल भी दिखाई दे रहे हैं।

कलर का दीवार भी दिखाई दे रहे हैं।

रंग बिरंगे गमला में पौधा टांगे हुए हैं।

सारे पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं।

बहुत सारे पे पौधे दिखाई दे रहे हैं।

नीला रंग का आकाश भी दिखाई दे रहे हैं।

रोड में पोल दिख रहा है।

ग्रे कलर का बादल भी दिखाई दे रहे हैं।

पे दुकान का दृश्य दिखाई दे रहे हैं।

गेट के ऊपर लिखा हुआ है तमाशा।

पहाड़ भी दिखाई दे रहे हैं और पानी भी दिखाई दे रहे हैं।

सारा मीठा रखा हुआ है जैसे में काला जामुन रखा हुआ है।

दीवार में लिख हुआ है ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल लिखा हुआ है।

दो व्यक्ति बैठे हुए हैं।

नीम का पेड़ दिखाई दे रहे हैं नीला कलर का आकाश भी दिखाई दे रहे हैं।

बिल्डिंग का दीवार कलर में सफेद है और लाल है ।

पोस्टर लगाया हुआ है बिल्डिंग्स भी दिखाई दे रहे हैं।

दीवार में बल्ब लगाया हुआ है।

बिजली का तार भी दिखाई दे रहे हैं।

बहुत सारे व्यक्ति लोग दिखाई दे रहे हैं।

और ऑटो भी दिखाई दे रहे हैं।

आइस क्रीम का ठेला भी दिखाई दे रहे--

एक व्यक्ति जमीन में बैठा हुआ है।

रैक मे बहोत सारे समान रखे हुए हैं लाल कलर की कुर्सियां दिखाई दे रही--

बहुत सारे सामान रखे हुए हैं नीचे में कील दिखाई दे रहे हैं।

और पंख लगा हुआ है गेट में शटर भी लगा हुआ है।

रूम में बहुत सारे बाइक दिखाई दे रहे हैं।

बहुत सारे बिल्डिंग का दृश्य दिखाई दे रहे हैं बिल्डिंग रंग बिरंगे हैं।

शहरा दिखाई दे रहे हैं हरा में पानी दिखाई दे रहे हैं।

व्यक्ति माइक से बोल रही है।